दो चार बाइक दिख रहा हैं दूर एक टोटो भी नजर आ रहे हैं और सामने भी कुछ बाइक दिख रहा हैं।

रूम के ऊपर की तरफ लाइट दिख रहा है दो ट्यूबलाइट सामने ही है।

एक बड़ा-सा रूम दिख रहा है एक रूम के अंदर बहोत सारा --

एक बड़ा-सा रूम दिख रहा है रूम काफी लम्बा है।

ट्री है दो और बड़ा-बड़ा दो-चार पेड़ भी हैं शायद |